पीछे में बहोत बड़ा सा स्कूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो एक फ्लोर का है कुछ लड़के वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रात में ली गई चर्च का फोटो है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं चर्च के बाहर में वो लाइट लगा हुआ है।

चर्च के बाहर में बड़ा से स्टैचू लग रहा है।

सीलिंग में एक फैन दिख रहा है और सीलिंग फाल सीलिंग है।

एक बड़ा ब्राइट सी लाइट दिख रही है।

बहोत सारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं स्टेयर्स में।

ये एक नदी के साइड में ली गई तस्वीर है जिसमें एक कुत्ता दिखाई दे रहा है।

कुछ किताबें रखे हुए हैं एक फ़्लास्क भी रखा हुआ है कीबोर्ड दिखाई दे रहे हैं माउस दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे जर्सी रखे हुए दिखाई दे रहे एक के ऊपर एक स्टाइक करते हुए और निविया का एक कुछ दे रखा हुआ है एडीडास दिख रहा है।

और एक पासीघाट होम डेकोर जिसके सामने बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

एक जू की तस्वीर लग रही है जिसमें बहोत सारे सिंह होते हुए डियर दिखाई दे रहे हैं।

का टीना दिख रहा है।

ये एक दीवार है जिसमें आर्ट बना हुआ है।

बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं जिसके ऊपर टीना है।

छत में एक चेयर रखा हुआ है एक होला होलो सीलिंग फैंस रखा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं दूर में पहाड़ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक टावर है जिससे वायर दिख देने दिखाई दे रही है।

वॉल नीला रंग का है कुछ खिड़कियां दिख रहा है और एक वायर ऊपर से नीचे आया हुआ दिख रहा है।

बहोत सारे पत्थर दिख रहे हैं और बाहर में बहोत रोशनी है।

ये एक स्विमिंग फॉल का तस्वीर है जिसमें दो लोग स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रहे है।